हम लोगो को एक मार्केट की पीक दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक हाथी जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और बच्चा भी सब्जियों की दूकान दिखाई दे रही हैं और की भी दूकान दिखाई दे रही है। गन्ने की दूकान दिखाई दे रही है। पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है बरगद का।

इस इमेज में हम लोगो को ओरिएंट कैनरा बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नीली शटर दिखाई दे रही है हरी कलर --